एक बहोत बड़ा ग्राउंड है और यहां पर--

हमें नजर आ रहा है यहां पर--

बहोत बड़ी चीज है।

एक बहोत बड़ी चीज है।